इस फोटो में बहोत सारे लोगों की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनायीं जा बनायीं गई हैं और इस मूर्ति में बहोत सारे लोग औरते बच्चा हाथ में लिए हुए --

बस के बगल में भी एक आदमी दिख रहा है और वहां पर एक टेम्पो भी लगा हुआ है और टेम्पो के बगल में भी एक आदमी दिख रहा है।

बगल में एक छोटा सा घर जैसा बना है और उसके ऊपर कई झंडे लगे हुए दिख रहे हैं।

के सामने एक और आदमी भी खाद डालता हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे जमीन पर बहोत सारे कटे हुए बाल बिखरे हुए है और सामने शीशा लगा हुआ है और ऊपर भगवान की फोट --

बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है उस पर भीम राव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की फ़ोटो बनी हुई है ऊपर कर्कट में एक फैन भी लगा हुआ है।

फोटो में एक कार को दिखाया जा रहा है। यह कार सफेद रंग की है और इसे फूलों से सजाया गया है।

इस फोटो में स्टेज पर बहोत सारी लड़कियाँ भरतनाट्यम की ड्रेस में खड़ी हैं और --

इस फोटो में एक जिम का दृश्य दिखाया जा रहा है जहाँ जिम की कुछ मशीने रखी हुई हैं।

इस फोटो में शादी के बफर सिस्टम का सीन दिखाया जा रहा है जहां एक आदमी खाना खाता हुआ दिख रहा है और तीन लड़के खाना सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लाइन से --